और एक जेंट्स भी दिखाया गया है। इसमें हर तरह के एक्सरसाइज साइकलिंग भी है।

और बॉडी जो है पैरों के लिए जो बोहत ही अच्छी होती है।

अच्छा उपाय है। इससे सेहत बोहोत अच्छी रहती है।

लगता है बच्चों को डांस सिखाया जा रहा है हां कुछ ऐसा ही दिख रहा है या पार्टी में यह लोग डांस करने गए होंगे।

लइटें जल रही है | तीन लाइट है यहां पर और रात को चंद्रमा का द्रिश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ।